एक रूम है लाइट्स दिख रही हैं टी_वी चल रहा है एक फैन दिख रहा है सामने एक सीनरी लगी हुई है।

बर्तनों की दुकान है हॉट केस है पानी की बोटल है टिफिन है।

सामने पंजाबी ढाबा है कोका कोला लिखा हुआ है।

सामने एक बहुत बड़ी झील सी दिख रही है।

मोटरसाइकिल है सामने वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है और सा आ बराबर में भी बिल्डिंग है।

इस पे येलो कलर का सैनिक अ क्रेन लिखा हुआ है ये दो पेड़ हैं एक साइकिल है।

एक शॉप दिख रही है दुकान।

एक बड़ी सी बॉल जाल पर रखी हुई है जिम के फोटो लगी हुई है।

और कुछ चलने वाली मशीन है ब्लैक कलर का कुछ टंगरा है।

अ तीन बच्चे बैठे हैं अ एक खड़ा हुआ है।

और कुछ मिट्टी की मूर्तियाँ हैं।

ग्रीन कलर का ओटो है दो जेंट्स है जिसने ब्लू कलर शर्ट पहन रखी है एक ने पर्पल कलर की शर्ट पहन रखी है।

कुछ हैंकर में लग रहे हैं कुछ अ शीशे वाले ख खाने में लगे हुए हैं।

एक बाल्टी है नहीं स्टूल है।

एक लड़का खड़ा है ब्लैक कलर की ड्रेस में जिसने जेब में हाथ डाला हुआ है।

सामने एक अं स्टेज लगा हुआ है फ्लावर लगा हुआ है ग्रीन कलर के येलो कलर के --

बड़े बड़े ट्रीज हैं खिड़कियाँ हैं गेट हैं।

एक पंखा दिख रहा है लाइट्स हैं ग्रीन कलर के कुछ पैकेट रखे हुए हैं ब्राउन कलर के पैकेट्स हैं।

एक मजदूर काम कर रहा है रोड बिछा रहा है लैंटर टाइप कर रहा है और वो फाबड़ा चला रहा है।

पानी की एक नहर है पानी गिरता हुआ दिख रहा है।

एक रोड पे फॉलब्रेडे वाइट कलर की खड़ी हुई है सामने कुछ--

एक गंगा जी दिख रही हैं गंगा जी के ऊपर एक पुल है।

कुछ जेंट्स पूजा कर रहे हैं गंगाजी में खड़े हुए और एक पकड़ के वापस आ रहा है।

लाइट्स हैं शीशा है सोफा है।

पौधे लगे हुए हैं गैंदे के फूल दिख रहे हैं डीजा है लाइट्स हैं और काफी सारी कुर्सियां हैं स्टेज है।

बड़े-बड़े ट्री दिख रहे हैं लाइट्स हैं।

खड़ा है एक छोटा बच्चा पास में है।

सामने एक गेट दिख रहा है एक मोटरसाइके पे किल पे--

दो दुकान है सामने एक बड़ा सा गेट है ट्री है काफी सारी मोटरसाइकिल हैं।

मशीन है काउंटर है लाइट्स हैं।

अ पाइप से पानी देते हुए दिख रहे हैं।

घास में और खिड़कियाँ हैं गेट्स हैं धूप है बराबर में ट्री है।

सामने शोकेस जैसी बोतल रखी हुई हैं।

सोफे हैं टेबल है पानी की बोटल है।

और एक अअ जेंट्स जा रहा है टेबल है प्यानो है।

सामने इस अ फ्लावर अ सजावट कीीी झालर लगी हुई है।

सामने एक बोर्ड लगा हुआ है हीरा मस्जिद का।

औऔर एक टेबल पर एक लेडीज जेंट्स हैं एक बाइक है फॉलबिलर है ईश --

सामने एक बोर्ड पे टोटसससस लिखा हुआ है।